यहाँ एक बँक है। यहां पे बोहोत सारे लोग उ म पैसा जमा करने के लिए आते हैं और बोहोत सारे लोग पैसा उठाने भी आते हैं।

बोहोत सारे इधर छोटे-छोटे पेड़-पौधे लगे --

और इधर म बहुत सारे लोग इधर उधर खड़े हुए हैं| इधर पास में बहुत पेड पौधे भी लगे हुए हैं।